और कुछ पाम ट्री और कुछ बड़े हरे वृक्ष वहाँ नज़र आ रहे है वही कुछ बाइक्स इधर पार्क किये गए दिखाई दे रहे है एलेक्ट्रिकपोलस और एलेक्ट्रिक वायर्स नज़र आ रहे है।